यहा सफेद कलर के बुगले दिखाई दे रहे है। कुछ पत्थर दिखाई दे रहे है जो काले रंग के हे हेहे।

यहाँं एक दुकान है यहाँं बहुत से थैले रखे हुए हैं कुछ कट्टी रखी है।

यहाँ एक दुकान उस पे बहुत सी चीजे रखी हुयी है। एक टेबल है वो सफ़ेद कलर की दिख रही है उसके ऊपर कैची रखी है जो नीले कलर की है आधी सफेद कलर की है। एक पखा है।

यहाँ ये खंडर मीनार जेसी दिख रही है। यहाँ बहोत से पत्थर चट्टानें-ने-ने हैं और दो --